और बांस सही से कटा किया गया है यह --

मसाले के कुछ वेपर आदि टंगे हुए हैं कुछ बिजली के --

ये एक छोटा सा पूल है यह मिट्टी का पूल है इसपे लोग आवाजाही करते हैं |

मस्जिद में बहुत सारे पानी है और --

ये एक बाजार है ये मछली बाजार है यहाँ पे बहुत सारे मछलियां हैं।

ए.सी. में चारो तरफ दीवारों पे शीशे लगे हुए हैं और लाइटें भी जल रही हैं।

यहाँ पे हर प्रकार के ए.सी. में सुविधा है।